बच्चे कुर्सी पे बेठे हुवे है एक बच्चा खड़ा हुवा है।

व्यक्ति के पीछे एक नदी और नाव दिखाई दे रही है।

और दूसरी ओर रेल दिखाई दे रही है रेल के दूसरी तरफ एक खंबा लगा हुआ है जिसपर तार लगी हुई है।

यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई रहे हैं और नीचे एक झूला दिखाई दे रहा है और एक कुर्सी भी दिख रही है और एक टक बना हुआ है।